साइड पे एक रुत गया हुआ है कत्था रंग की रोड लगी हुई है अगल - बगल ये गाडर्न हैं जो हरे रंग की पत्तियां हैं हरे रंग की घास उगी हैं फुल लगाये गई है जो पिंक कलर के पीले रंग के फूल हैं |

जो काफी बढ़िया ऑरेंज रंग की और सफेद रंग की उसमें एक साइलेंसर बनी हुई है दो तक्थे रखे हैं।

एक टेंट बना हुआ है लाल रंग की पोस्टर लगायी गई है और बगल में खत्ते रखे गए हैं ताकीए रखे गए हैं दीवाल में खंबा बना हुआ है ऊपर के शट में परदे लगे हुए हैं जो लाल और सफेद रंग की है |

एक घर और एक बिल्डिंग है जो बिल्डिंग के अंदर दो आदमी खड़े सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं बिल्डिंग का रंग हल्का ग्रे रंग का है और क कत्तथे रंग के बॉर्डर बनाई गई है|

एक फिसल पट्टी दी गई है जो गोले में बन गया है नीले रंग का और लाल रंग के सफेद रंग के सीढ़ी बनी हुई है सफेद और नीले रंग के आसमान मे |

सामने साइड में घर बनी हुई है जो नीले रंग की हैं।

और ये सब्जी की दुकान है जो बहुत सारी सब्जियां रखी गई है नीचे के साइड पे कलंद्रे जो हरे रंग की है और ऊपर की साइड पे केले रखे गए है हरे रंग के --